और एक बड़ा सा काउंटर है।

नीचे फर्श पर वाइट टाइल्स लगा हुआ है और रेलिंग भी दी हुई है।

इस दुकान में बहोत सारा अलमारी लगा है।

यहां रेड कलर का डब्बा भी दिख रहा है।

सामने एक पहाड़ दिखाई दे रहा है।

सुनझुनिया झरना एवं चुना झरना है।

इस झरने में बहुत सारा पत्ते गिरे हुए हैं।

बगल में दो आदमी दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर में लाइट लगी हुई है और एक फोटो भी--

और फीता लगाया हुआ है एक काला टब रखा हुआ है।

इसमें लाइटें लगी हुई है और बाइक भी--

ब्रश रखा हुआ है और साबुन भी रखी हुई है।

बगल में एक लोहे की जंजीर बनाया हुआ है।

यह एक धार्मिक अस्थल है।